ये यहाँ एक बस ड्राईवर --

कपड़ो की शॉप है।

यह रात का दृश्य है।

जिसमे चर्च का गेट दर्शाया गया है और उसके ऊपर --